इस तस्वीर में मुझे दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे दिखाई दे रहा है ये फोटो बहुत छोटी टाइप का दिया हुआ है इसके आगे जो है।

हम देखाता है कि एक आदमी खड़ा हैं इस जीम का सामान रखा हुआ है।

अगल बगल कुछ दिखाई नहीं दे रहा है सब--

पत्ते एलोवेरा का पेड़ नजर आ रहा है।

आस पास अगल बगल में बहुत सा--

और अगर बगल कुछ दिखाई नही दे रहा--

तस्वीर में मुझे नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में मुझे नजर आ रहा है।